सामने की ओर आदमी दिख रहे हैं।

इस चित्र में ज्वेलरी की शॉप दिख रही है।

दुकान के अंदर बैंगल्स भी दिख रही है बुक्स भी दिख रही है।

ऐसा दिख रहा है इमेंट दिख सीमेंट दिख रही है ईट दिख रही है।

बहोत सारे लोखंड के सरिये भी दिख रहे हैं।

सारे पेड़ भी है और बहुत लोग भी खड़े हुए नजर आ रहे है।

त्र में बोहोत सारे बच्चे नजर आ रहे हैं।

जो खेल रहे हैं और ये कुछ गार्डन जैसा नजर आ रहा है।

वहां पे बीच पे सब लोग नजर आ रहे हैं।

और वहां पे एक नेट भी बीच मे लगाया हुआ--

और पेड़ भी बहुत सारे नजर आ रहे हैं।

इस फोटो में उषा एजेंसी का एक कॉम्पलेक्स है।

और काफी सारे लोग खड़े हुए दिख रहे है।

कार भी पार्क की हुई है और लोगों भी--

बिल्डिंग जैसा नजर आ रहा है वहां पे एक ट्रक भी है।

बहोत सारे इलेक्ट्रिक वायर भी नज़र आ रहे है।

बाहर उन्होंने फूलों से सजाया हुआ भी है।

आगे ही होल्डिंग पे बहोत सारे मोबाइल के कवर का वो --

चाय देते हैं वो वाला नजर आ रहा है।

यहां पे बहुत सारे डाइनिंग टेबल और चेयर रखे गए है।

और उसके ऊपर प्रेस्टीज का कुकर भी रखा हुआ है।

इस चित्र में एक नदी का किनारा नजर आ रहा है।

सामने की ओर बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे हैं।

ऊपर नीला आसमान दिख रहा है।

नीचे हैमर प्रेशर सब कुछ पड़ा हुआ भी नजर आ रहा है।

और हल्दी का माहौल हो ऐसा लग रहा है।

इस चित्र में डॉक्टर का एक रूम हो वैसा नजर आ रहा है।

उन्होंने लिखा भी है वेफल ऑफ़ द डे रेड वेलवेट वन ट्वेंटी ।

लारी भी है और उन्होंने टेंट जैसा भी बनाया है।

द हेवन नजर आ रही है ए_सी नॉन ए_सी सब अवेलेबल है।

पर ऑटो रिक्शा नजर आ रही है दो लोग नजर आ रहे है।

एल_इ_डी लाइट्स भी लगाए गए हैं।

और एक आदमी बाहर है जो कूड़ादान ले के आ रहा है।

कार पार्क की गई हुई है और एक ट्रक भी नजर आ रहा है।

इस चित्र में नीचे पत्थर नजर आ रहे है।

और एक आदमी है जो कार पे कुछ कर रहा--

नज़र आ रहा है और कार का दरवाजा भी खुला हुआ है।

और कच्चा रोड है और नीचे बोहोत सारे --